एक बिल्डिंग पर ढ़ाबा लिखा हुआ है।

क्या एक स्विमिंग पूल का दृश्य है।

इसके ऊपर एक त्रिपाल लगाया गया है जिसका कलर ब्लू है।

उसके हाथ में एक गोल्डन कलर का सिंबल दिखाई दे रहा है।

मूर्ति को गोल्डन कलर का कपड़ा पहनाया गया है।

इसके माथे के ऊपर कांटे जैसे खोपड़ी बनाई गई है।

एक बाइक का कलर रेड है।

एक बाइक का कलर व्हाइट है इसके साइड में दो पिलर्स गड़े हुए हैं जिसका कलर व्हाइट है।

इस बिल्डिंग के नीचे एक कार खड़ी है जो की गोल्डन कलर की है।

एक पानी का बोतल रखा गया है जिसका कलर ब्ल्यू है।

एक औरत खड़ी है जिसने पीले कलर का सूट पहना हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

इस दुकान में बहुत सारी लाइटें जली हुई हैं।

यहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं कुछ लड़कियों ने अपने हाथ में दिए जलाए हुए हैं।

एक क्रिश्चियन का सिंबल लगाया गया है।

जिसके ऊपर दो लाइटे जली हुई है।

एक बुलेट खड़ी है जिस पर हेलमेट लटका हुआ है।

इस बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां लगाई गई है कुछ बांस लगाए गए हैं।

इस हॉल के छत पर एक बैनर लगाया गया है जो की ब्लू कलर का है।

उसके हाथ में एक बाल्टी है जिसका कलर --

कुछ पाइपों से पानी आ रहा है।

डिनर में चटपटा चाट हाउस लिखा गया है।

एक गैस का चूल्हा भी दिखाई दे रहा है।

एक टेबल रखी गई है जिसका कलर व्हाइट है।

इस बिल्डिंग के ऊपर एक बैनर लगाया गया है जिस पर टाटा मोटर्स लिखा गया है।

बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

इस रेस्टोरेंट में बहुत सारी लाइटें और बैलूंस लगाए गए हैं।

इस पर अनमोल पर अमूल नोट दही घी पनीर रसगुल्ला लिखा हुआ है।

इस जिम में बहुत सारी खिड़कियां लगाई गई है।

यहां एक बगीचे का दृश्य है।